मुझे इस फोटो में बहुत सारे लेडिज व जेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में साइड में कुछ मकान भीं दिखाई दे रहें हैं।

मुझे इस फोटो में एक कांच का काउंटर भी दिखाई दे रहा है।